बहुत सारी सीटें लगी हुई हैं। टेबल हैं जो सीट आदमी कुछ रख रहा है। में कुछ है।

यहाँ वुड्लैन्ड लिखा हुआ है सफेद कलर मे और हारे कलर का पूरा बोर्ड सा है लिखा हुआ है पर फिफ्टी प्र्जेन्ट ऑफ।

जग भी रखी हुई हैं पानी पीने के लिए जो लाल कलर के हैं। साइड मे पिलर भी लगे हुए हैं। अंदर को कई सारे कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ डमी लगे हुए हैं और डमी ने कपड़े पेहेर रखे हैं।

गाड़ी जे नए मॉडल की है। वो टैक्सी है और शिफ्ट है। है। यहाँ पर टैक्सी लिखा हुआ है।

बोहोत सारी चमन रखा हुआ डिटर्जेंट रखी हुई है कई सारे उनके कलर नीले हरे लाल है टिकिया रखी हुई है।

यहाँ पे गेट है हरा। एक एक गेट की तरफ का खुला हुआ है और एक बंद है। यहाँ पे पौधे हैं पेड़ हैं एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाॅं पे बोर्ड लगी हुई है। यहाँ से एक आदमी लड़का जा रहा है

नीचे कमरा सा है उसका गेट खुला हुआ है खंबा बना हुआ है छत पे --